पानी बहोत ही साफ दिखाई दे रहा है।

बहोत ही सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें जिसने ड्रेस पहन रखी है।

झाड़ बहोत सारे लगे हुए हैं।

जो दो उंगली दिखा रहा है।

और ऐसा लग रहा है के ये घाटी का सीन है।

सिर्फ उसकी छत पर पतरे लगे हुए हैं।

ये पिक में हमें एक बंदा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

फुटबॉल का कलर येलो कलर का है।

और कित कई लोग वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेज के नीचे।

और मछलियों के तीन घर दिखाई दे रहे हैं कांच के।

यह पिक में हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ है श्री आराध्य।

एक बाइक और एक ब्लू कलर की कार भी दिखाई दे रही है।

और लाइनिंग वाली लाइटे लगी हुई है।

वैल्यू एंड वैरायटी लिखा हुआ है अंदर बहोत सारी लाइट्स लगी हुई है।

ये पिक में हमें एक नदी दिखाई दे रही है।

स्टेज के पीछे ब्लू कलर का कपड़ा दिखाई दे रहा हैं।

जिसमें से सात लड़कियाँ बैठी हुई है और छह लड़कियाँ खड़ी हुई है एक लड़का भी खड़ा हुआ हैं।

यह पिक में हमें एक बस दिखाई दे रही है।

जोकि लकड़े का बना हुआ है।

और नीचे उसके लिखा हुआ है टॉप एंड टाउन आइसक्रीम और कई लोग दिखाई दे रहे हैं।

साइड में एक वॉल पर थ्री सिक्सटी सल कुछ ऐसा लिखा हुआ है।

और हमें कई लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये पिक में हमें पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा हैं।

जहां पर स्कूल की बेंचेस रखी हुई है।

जोकि हमें जमीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक के ऊपर एक रखें हुए हैं।

यह पिक में हमें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है जिस पर बांदा एक बैठा हुआ है।

और हमें बलूंस भी दिखाई दे रहे हैं।